पीछे की रैगों में काफी सारे शैम्पू और नमकीन वगैरह रखी हुई दिखाई दे रही है।

आगे की तरफ कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट और रस के पैकेट और आटा के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और छोटी छोटी घास भी है।

ये एक सैलून के दुकान का इमेज है जहां पे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति फोन से फोटो क्लिक कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति फोटो में पोज दे रहा है।

जे_सी_बी के ऊपर ब्लैक कलर से दो नंबर लिखे हुए है।

यहां पे धूप भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और यहां पे आसमान एकदम साफ है।

ये एक गांव की इमेज है जहां पर एक बड़ी सी जंग खाई हुई मशीन रखी हुई है।

हुको के ऊपर मिट्टी की छोटी छोटी बरतने रखी हुई हैं।

यहां पे आसमान थोड़ा सा धुंधले कलर का दिखाई दे रहा है।

ये एक ग्रोसरी मॉल की इमेज है जहां पर बहोत सारे प्रोडक्ट लाइन वाइज लाइन रखे हुए हैं।